बहोत सारी तर बहोत सारी चीजे बनाए गए हैं जैसे कि घर है बतख है चूड़ियां है डॉग है और पतंग इत्यादि।

और कुछ खड़े होकर इनका लुफ्त उठा--

उसके ऊपर में फेयर लवली का पोस्टर टंगा हुआ है और यहां पास एक पेड़ है।

यहां नेचुरल टेस्ट द द ऑरगिनल लिखा हुआ है।

सामने में और यहां तीन ची तीन खिड़कियां हैं और--

यहां पास बिल्डिंग है यहां पास बहुत सारी खिड़कियांए हैं और यहां दो दरवाजे--

और यहां पास एक कार है और यहां सड़क में एक ऑफर चल रही है।

और यहां पास एक आदमी है जो कि साड़ियों को तय कर रहे हैं।